यह एक बर्ड शॉप है। जहा बहोत सारे बर्ड दिखाई दे रहे है। और उस शॉप मे सामान दिखाई--

और वेजिटेबल और फ्रूट के स्टैंड के पीछे एक पिंक कलर की दीवार दिखाई दे रही है।

यह एक वॉटर पार्क है वॉटर पार्क के बीच मे स्विमिंग पूल है जिसमे एक छत्री है और कुछ लोग पानी मे एंजॉय --

यह एक पंछीयो का पिंजरा है पिंजरे मे पंछियो को बैठने के लिए दो डंडी लगायी गयी है।

यहाँ पे एक बुक की कॅफे दिखाई दे रही है। जिसके अंदर बहुत सारे बुक्स रखाए गए है। और एक बैनर लगाया गया है। जिसपे--

यह एक ऊपर से ओपन कॅफे दिखाई दे रहा है। इसमे बहुत सारे चेयर और डेक्स लगाए हुए है। और--